और कुछ पुतले रखे हुए है जिनके सर पे कुछ टोकरिया है रंगबिरंगे पुतले हैं।

इस तस्वीर में कुछ लोहे की रॉडे दिखाई दे रही है खड़ी हुयी फिर अ बीम है आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है चश्मा पहना हुआ है जैकेट पहना हुआ है पीछे की तरफ एक कैफ़े दिखाई दे रहा है ऊपर लिखा हुआ है द सिटी अंग्रेजी में।

इस तस्वीर में बहुत सारे लड़के खड़े हुए अपनी तस्वीर खिचवाते हुए दिखाई दे रहे है।

निचे की तरफ एक दूकान दिखाई दे रही है ऊपर काला बोर्ड लगाया उसपे अंग्रेजी में दा सिटी कैफ़े सफ़ेद रंग से दिखाई दे रहा है और हरे रंग की म्याट बिछी हुयी है।

इस तस्वीर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रही है और काउंटर दिखाई दे रहा है उसपे बर्निया रखी हुयी है और पीछे बोर्ड लगाया हुआ है उसपे हिंदी में आर के कॉफ़ी स्टॉल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे कुछ लड़के और लडकीया एक स्टेज के उपर कला करते हुए दिखाई दे रहे है एक के उपर एक खड़े हुए है।

इस तस्वीर में एक सलून दिखाई दे रहा है लाल कुर्सियां दिखाई दे रही है और ऊपर की तरफ बोर्ड लगा है।

ये किसी नाई की दुकान की तस्वीर है और एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है अपने हाथ में कुछ लिया हुआ है और रंगबी रंगी काळा टी शर्ट पहना हुआ--

और थोड़ा सा साइड से वो तस्वीर है पीछे की तरफ नाई की दुकान दिखाई दे रही है नारंगी दीवार है कुछ कुछ सामान रखा हुआ है एक लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।